दिख रही है जोकि फूलों की शॉप है। आप देख सकते हैं इस शॉप में काफी सूंदर-सूंदर फ्लावर्स हैं ये देखिये यहाँ पे हर एक वैरायटी का फ्लावर्स मिलेगा आप को।

ये जो विश्व ये जो विद्यालय है। जो कि यूपी के --

ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक वगैरह जो है यहाँ पे पार्किंग में खड़ी हुई हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे।

यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पे।

और ये कैफे की अभी ओपनिंग हुई है।